यह एक डाक घर है।

सिगरेट पुड़िया कुरकुरे --

फूल के पौधे लगाए गए हैं जो देखने में खूबसूरत हैं।

एक इंडियन ऑयल पंप है। यह इंडियन ऑयल पंप में --